आप देख रहे हैं ये फलों की दूकान है। यहाँ पर बहुत से फल हैं जैसे कि आम है संतरा है सेब हैअनार है।

ये सजावट है काफी अच्छी सी। यहाँ काफी लोग है। किसी का बर्थडे मनाया जाता है और देखें यहाँ पर सामने --

और यहीं से अच्छे-से अच्छे कपडे धुलते हैं।

यह एक अस्पताल है यहाँ कितनी सारी कुर्सियाँ पड़ी है यहाँ पे मरीज बैठते है और जो मरीजों को लेकर आते है वो भी बैठते हैं।

यहाँ पर डेली रोज बहुत-सी बीमारियों का इलाज होता --

देखिये यहाँ पर एक नई-नई बिल्डिंग बन रही है और ये बिल्डिंग काफी सही दिख रही है। बिल्डिंग बनाने में बहुत खर्चा होता है। यहाँ पर एक मजदुर ईटा ढो रहा है और एक कुर्सी भी पड़ी हुई है।